काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कंप्यूटर लैपटॉप भी दिखाई दे रहे हैं।

आय हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में मुझे राहुल कंप्यूटर्स नाम की--

मुझे इस चित्र मे कुछ बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रहे है।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

और कुछ बेंचेज भी पड़ी हुई है जिसके ऊपर बैग्स रखे हुए है।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके आसपास कुछ--

जैसे की पानी की बोतल स्प्राइट फ्रूटी की बोतल और भी बहोत सारी चीजें पड़ी है।

कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें काफी सारे कपड़े भी दिख रहे है।

जिसमें काफी सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं।

और एक केबिन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

परचेस करते हुए दिखाई दे रहीं हैं।

दो गाड़ियां और एक साइकल खड़ी हुई हैं।

पानी की कैन भी पड़ी हुई है।

और कुछ दो तीन लेडिस भी दिखाई दे रही है।

किया हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसमें--